उसके पास एक थाली भी ह है थाली मे पैसे भी है एक दिया भी है और हर भी है और फूल भी है।

यह एक झगमगती शॉप है इस शॉप में बहुत सारी ट्यूब लाइट्स है।

ऊपर की तरफ मॉल है उसके नीचे एक और भी मजला है नीचे एक बहुत बड़ी बोरी है आसपास जेंट्स है।

नीचे एक गड्डा है उस गड्डे में बहुत सारा पाणी भरा हुआ है।